जिसके ऊपर सीड़िया भी लगी हुई है।

तीन चार इमेजे लगी हुई हैं।

दाईं तरफ एक ऑडी कार जिसका कलर नीला है बाईं तरफ एक सफेद कार --

यह एक शादी का गार्डन है।

यहां पर लाल कलर की छोटी छोटी टेबलें लगी हुई है जिनके ऊपर मोमबत्तियां जल रही है।

जिसने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है।

सफेद रंग के फूलों की मालाएं टंगी हुई है।

जिसके नीचे बहुत सारी मूलीया रखी हुई हैं।

जिसके ऊपर एक बच्चों की फिसल पट्टी लगी हुई है।

एक कमरे के अंदर यहां पर खूब सारी औरतें बैठी हुई है।